यहा पे बहोत सारा समान पड़ा नजर आ रहा है यहा पर बहोत सारे वर्कर्स काम करते नजर आ रहे है यहा पर एक इंसान खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में दो जनरल स्टोर नजर आ रही है आ स्टोर में बहुत सारा समान नजर आ रहा है जैसे कि झोले बुक्स अ चीज के पैकेट वगैरा --

आ किले के अंदर कुछ पेड़ छोटे हैं और कुछ पेड़ बड़े हैं किले के बाहर भी एक पेड़ नजर आ रहे हैं जो का जो की गोल शेप का --

और महल के गेट्स का कलर येलो है अ महल के बहार बहोत सारे फ्लॉवर पॉटस रखे नजर आ रहे हैं।

तीन फ्लावर पॉट का कलर अ-ऑरेंज है और एक फ्लावर पॉट का येलो .